कुछ महिलाए बैठी हुई देखी जा सकती है तथा कुछ महिलाए खड़ी हुई देखी जा सकती है नीचे पानी देखा जा सकता है बोट लकड़ीयों का बना हुआ है उसपे कुछ सामाने रखी गई है कुछ नाव को चला रही है।

पीछे कुछ ब्लू कलर का बेंगन जैसा देखा जा सकता है नीचे धरती देखी जा सकती है पीछे ब्लू कलर का कुछ पोस्टर देखा जा सकता है जिसपे कुछ लिखा गया है।

खिड़की जैसा भी देखा जा सकता है पीछे अंदर भी मॉल जैसा देखा जा सकता है। जिसके बहुत से लोग देखे जा सकते है। आगे एक लड़की भी देखी जा सकती है। बगल मे एक बहुत बड़ा पोस्टर्स लगा गया है। जिसमे कुछ चित्र बने हुए है।

ईथ एक वे -- एक लोग हेलमेट लगा लिया हुआ है पीछे कुछ मशीन जैसा देखा जा सकता है पीछे का गेट लोहे का है लोहे की चारो तरफ तथा जिस शीशे से बनी हुई है बगल मे कुछ सीढ़ी जैसा देखा जा सकता है बगल मे एक व्यक्ति भी बैठा देखा जा सकता है।

यहा पर एक किताबों की दुकान देखी जा सकती है जिसके अंदर कुछ लोग देखे जा सकते है बाहर जे काउंटर जैसे बनाया गया है आगे भी कुछ लोग खड़े देखे जा सकते है।

अगल-बगल कुछ कॅलेंडर टांगे गए है कुछ बुक्स भी देखे जा सकते है अंदर कुछ सिड़ी जैसा देखा जा सकता है अंदर एक व्यक्ति बैठा देखा जा सकता है बाहर कुछ लड़के खड़े देखे जा सकते है एक महिला भी देखि जा सकती है।

नीचे च- नीचे धरती देखि जा सकती है। एक व्यक्ति फोन से बात करता हुआ नजर आ रहा है। एक व्यक्ति कुछ यह मछ्ली शॉप जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। नीचे धरती देखि जा सकती है पीछे कुछ बड़े-बड़े कार जैसे बनाए गए है। ऊपर ब्लू कलर का आकाश साफ देखा जा सकता है।

हरे-भरे पेड़ देखे जा सकते है फील्ड जैसा कुछ देखा जा सकता है जिसमे कुछ टेम्पो देखे जा सकते है टेम्पो मे कुछ लोग बैठे हुए है।